यह एक बहुत सुंदर जगह है यहां पर बहुत सुंदर लाइटिंग की हुई है।

रखा गया है शॉप के बाहर--

है यहां पर कितनी सुंदर फ्लावर भी लगे हुए हैं।

यह एक बहुत सुंदर जगह है यहां पर कितने सुंदर पेड़ पौधे लगे हुए--